पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं खेत खलियान दिखाई दे रहा है।

पंखे दिखाई दे रहे हैं।

करेट दिखाई दे रहा है।

मिट्टी दिखाई दे रहा है।

इटा दिखाई दे रहा है।

रिजर्व बैंक दिखाई दे रहा है।

आदमी दिख रहा है मोबाइल दिखाई दे रहा है।

भगवान का फोटो दिखाई दे रहा है।

एसबीआई बैंक दिख रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

लाइन का तार दिख रहा है।

चक्का दिखाई दे रहा है।

मछली मंडी दिख रहा है।

आसमान का रंग नीला है।

लोहा का गेट दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं गमला दिखाई दे रहा है।